समंदर का और आसमान दिख रहा है क्लोद्स दिख रहे हैं।

ये चित्र में फुग्गे हैं फुग्गे व्हाइट और ऑरेंज--

आसमान बोहोत अच्छा नजर आ रहा है।

ये चित्र मे बहोत सारे स्वीट कॉर्नस रखे हुए है निचे की तरफ घास --

ये चित्र में एक बाइक है जो में घास में ठहरी हुई है हेलमेट रखी हुई है रखे हुए हैं आसमान दिख रहा है।

कुछ छोटे - छोटे घासें भी दिख रही हैं एक पाइप पड़ा हुआ है।

ये चित्र में खंबे हैं बंबुआ है मिरर्स हैं गाड़ी रखी हुई है नीचे की तरफ आसमान दिख रहा है धूप आ रही है बहौत सारी।